अ समरसेबील पम्प भी मिलती है। इस तरीके से लिखा हुआ है और --

और यह एक भारतीय स्टेट बैंक है जोकि --

दुल्हन को बैठाया जाता है और उन्हे सजाया --

यह एक पार्क है। पार्क में सभी और --

ई खेतवा हुआ है जोकि --

धरम के खातिर सभी --

इस भीड़ को संख्या में है और हैं।